पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और दुल्हन ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ है और दोनों फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

और उसके चारों ओर जनता जो मैच देखने आई हुई है बैठी हुई है और सर्दियों के सर्दियों का टाइम चल रहा है।

और स्टेडियम के चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक खिलौना एक चार दिवारी की तरह बंद है उसके बीच में एक लाल कलर की कार रखी हुई है।

चित्र में एक कार के पार्किंग का स्थान दिखाया गया है जो एक कारखाने के जैसा है।

घोड़े की एक घोड़े की आकृति की गाड़ी और ए बी ए टू जेड अल्फाबेट एनिमल्स नेम ।